पिउछ पर्दे वगेरह भी लगे हुए दिखाई दे रहा हैं खिड़कियाँ भी लगी हुई --

उनका कलर व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज है यहां पर बहुत सारे परदे लगे हुए।

ए.टी.एम. मशीन रखी हुई है यहाँ पे।

पे कोई बोर्ड वगैरा लगे हुए है और बिजली की बहुत सारी तारे भी दिखाई दे रही।

और ग्रीन है यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है जिसने व्हाइट और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

केबल का कलर व्हाइट है बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है एक ओर बिजली की तार लगी हुई है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

धनिया वगैरा भी रखी हुई दिखाई दे रही है और बॉक्स भी रखे हुए है वहां पे कुछ बोरियाँ भी रखी हुई दिखाई दे रही है और नीचे जमीन दिखाई दे रही है।